एक बड़ा सा वो बैठी हुई है और मछली बेच रहीं है इसके पास बहुत तरह का मछलियाँ है ।

यह एक स्टैशनेरी का दुकान है जिस दुकान का नाम है प्रभात स्टैशनेरी एण्ड गेस्ट हाउस --

यह एक मछुआरा है जो की बहुत प्रकार का मछली रखे हुए हैं और ये एक जगह बैठ कर के मछली सेल कर रहा है इसके पास चार लोग भी खड़े हैं जो की मछली खरीदने के लिए आए हुए हैं और ये बहुत प्रकार के मछली रखे हुए हैं।

और ये बहुत सुंदर लग रहा है।